और सामने एक आदमी हाथ जोड़े खड़ा हुआ है और भगवान की पूजा कर रहा है।

यहाँ पर कुछ दूकानो की फोटो है जिसके सामने दो तीन आदमी आपस मे बातें करतें नज़र करते आ रहे है।

दुकान के सामने एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है और एक दुकान बंद है जिसके सामने एक साइकिल खड़ी हुई है।

यहाँ एक सब्जी मंडी की दुकान है जहां पर बहोत सारे फल--

रख रखे हुए दिखाई दे रहे है इनमे से कुछ संतरे कुछ आम कुछ तरबूज या खरबूज जैसे फल रखे हुए हैं।

इस दुकान का नाम चक्रधर एलेक्ट्रिकल्स एंड इंजिनीयरिंगस वर्कस हैं।

यहाँ पर कुछ एलेक्ट्रिकल्स का सामान रखा हुआ है।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

ऊपर से इस फोटो में सिर्फ छत नज़र आ रहे है सारी सरे फैक्ट्री के घरों के--

इस चर्च के बाजु मे पिंक कलर का घर दिखाई दे रहा है।

कुछ बाइक पार्किंग में खड़ी हुई है यहाँ पर--

जिसपर बहुत सारे बच्चे स्केटिंग करते हुए बॉली बॉल खेलते हुए दिखाई दे रहे है।

पीछे काफी सारे लोग उन्हें देखते हुए देख रहे है।

इस फोटो में एक बहोत बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है जिसके निचे काफी सरेा दुकाने लगी हुई है।

इस फोटो में एक लाल कलर भवन दिखाया गया है जिसमे सफेद कलर खम्बे लगे हुए है।

भवन के सामने एक पानी का कुंड है जिसमे किनारे पर काफी सारे पेड़-पौधे लगे हुए है।

इस नदी में साफ पानी दिखाई दे रहा है नदी के किनारे कुछ घाँस लगी हुई है कुछ पिलर पड़ा हुआ हैं।

पुल के ऊपर से एक ट्रक जा रहा है।

इस लाइब्रेरी में बच्चे अच्छे से पढ़ सकते है शांति से--

इस फोटो को देख कर लगता है की यहाँ एक औरत--

सामने एक आदमी अपने बच्चे को गोद में रखे झूला-झूल रहा है और कुछ औरते भी है।

एक पेड़ की छाव में बहुत सारे लोग बैठे हुए कुछ डिस्कस कर रहे है।

यह बहुत बड़ा मॉल है यहाँ के डिस्प्ले काफी अच्छा और लाइटिंग से लगा हुआ है।

पाउडर और सौंफ और सादा चम्मच और प्लेट रखी हुई है।

यहाँ की देख-रेख करने वाले लोग वहां रहते होंगे।

यह फोटो एक आंटी ऑनलाइन वाली की है जिसमे कुछ स्टैशनेरी का सामान भी रखा हुआ है जिसमे काफी सारे पेन पेन्सिल --

कुछ दीवाल की दरसवे पोतता हुआ दिखाई दे रहा है।

कुछ स्कूल गोइंग बॉय जाते हुए दिखाई दे रहा है और कुछ बाइक्स खड़ी हुई है यहाँ पे--

और इस पार्क में बॉउंड्री भी दिखाई दे रहे है पार्क के बिच में मिट्टी से बानी गालिया और सीमेंट से बनी गली भी दिखाई दे रही है।

गलियों के किनारे पर काफी अच्छे तरीके से पेड़-पौधे लगाए हुए है यहाँ पे छोटे-छोटे पेड़-पौधे और बड़े-बड़े पेड़ भी है।

इस खेल को बच्चे ब बहुत ही चाव के साथ खेला करते है।